पीछे की ओर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी वाला।

नीचे की ओर भोग भी लगाया गया है।